कम पैसा में अच्छा बाल काटता है बहुत मोडलिंग डिजाइन और अच्छा-अच्छा बाल काटता है।

जोकि यहाँ बहुत दूर-दूर से लोग इसको देखने आते हैं सरस्वती माँ और बहुत सारा हिन्दू धर्म के लिये अच्छा है । बहुत लोग पूजा करने आते हैं यहाँ पे ।

और अच्छा और हरा-भरा दिख रहा है जोकि यहाँ पे बहुत लोग दूर-दूर से आते हैं और इस तालाब से पानी सिंचाई करके खेती बा --

यह एक बहुत सुन्दर लड़का का फिगर दिखाया गया है यह लड़का दिखने में काफ़ी सुन्दर और स्मार्ट है।